प्रेयर करते है। ये ईसाम सी की तस्वीर है।

मुजफ्फरपुर का फेमस लीची होता है लीची सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

तस्वीर एक चिड़िया घर की है। यहाँ पिंजेरे के अंदर एक टाइगर है।

बहुत सारी कॉफ़ी रखी हुई हैं यहाँ पे एक लड़का अपने हाथ में कॉफ़ी लिया है।

यह तस्वीर एक रेलवे इस स्टेशन की दिख रही है । यहाँ प्लेटफार्म पे --

इस तस्वीर में एक औरत वीणा बजाते हुए दिख रही है।

यहाँ एक आदमी दिखाई दे रहा है।